स्वास्थ्य सेवा में है | सारा आदमी बहोत सा आदमी है बैठा हुआ स्कूल है।

घूमने का जगह है कुछ प्रोग्राम हो रहा है कुछ झंडा गड़ाया हुआ है। यहाँ सारा सब आदमी सब बैठा हुआ है सभी तरह का --